और विशाल ए और उसके सामने जो है कुछ बोहुत दूर पर पेड़ नजर आ रहे हैं और टावर नजर आ रहा है। आसमान भी दिखाई दे रहा है।

सामने में पिलर दिखाई दे रहे हैं। पिलर पर बैनर लगे हुए हैं। नीचे मे रेड कलर के आ रेड कलर और ब्लैक कलर के लोहे के डंडे लगे हुए हैं। बाइक सवार खड़े हुए हैं जो ब्लू कलर के शर्ट पहने हुए हैं हाथ मे बैग टंगा हुआ है। उनके सर पर हेलमेट लगा हुआ है। छत दिखाई दे रही है आसमान नजर आ रहा --

दीवार दिख रही है जिस पर रेड और ब्लैक कलर के बैलून्स लगे हुए हैं। कर्टन लगे हुएं हैं ग्रीन कलर और पीच कलर --

दिखाई दे रही है जो कि वाइट और पीच कलर की है। एक वाई यलो और ग्रीन कलर की चेयर रखी हुई है।